यह एक अंग्रेजी शराब की दुकान है।

सामने एस_बी_आई का बैंक है।

जो की शोपीस के अंदर हैं।

मुझे यहां चार लोग दिख रहे हैं।

एक ख बड़ा सा घर दिख रहा है।

और एक गाड़ी भी है।

इससे पैसे निकाले जाते हैं।

जिसका कलर बहोत अच्छा है।